आइट साइड काफी सारी बिल्डिंगे है और काफी पेड़ भी।

इस गार्डन में घास और काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जिनकी कटिंग करी गयी है।

यहाँ पर एक बड़े से लोहे के कटोरे के अंदर काफी सारी पत्तियां और फूल रखा हुआ है जिसके ऊपर लोटे से दूध गिर रहा है।

यहाँ पर काफी सारी भगवानो की छोटी -बड़ी मुर्तियाँ दिख रही है और गेंदे के फूल के गमले भी दिखाई दे रहे हैं।